यहां पर ये गैरेज दिखाई दे रहा है यहां पर हमें ये--

यहाँ पर कुछ कपड़े टंगाये हुए हैं।

इस फोटो में हमें यहां पर एक--

यह सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टिट्यूट की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

टेबल लगे हुए दिख रहे हैं लगी हुई है।